लेकर ईट जमा रहे है और एक ओर साइड अंकल खड़े हुए है और पटिया भी रखे हुए है यहाँ पर बोरी भी पड़ी हुए है खाली।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और वाइट कलर बादल दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग के सामने कुछ लिखा हुआ हैं और--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

यहाँ पर बहुत बड़ा हाल टाइप का दिखाई दे रहा हैंबहुत सारी कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं बहुत सारी लाइटे भी दिखाई दे रहाँ हैं।

यहाँ पर एक शिवलिंग जैसा मंदिर बना हुआ है जिसमे पुरानी देवता टाइप के बनी हुए और मंदिर पे डिजाइन भी डाली हुई है।

और एक पुरानी सी गुंफा दिखाई दे रही है और यहाँ पर गुंफा में पत्थर टाइप के दिखाए दे--